इसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जो ब्लू कलर का है जिस पे डार्क घर लिखा है।

कुछ लेडीज और जेंट्स दिख रहे हैं।

जो कि अ ग्रीन और ग्रे कलर की है और पिंक कलर भी है।

और जिसके आगे कुछ पेड़ लगे हैं और नीचे आई लव एन _एन_ सी_ टी_ यू लिखा है।

बाहर तीन बाइक्स खड़ी है।

जिस पे एटीएम यूनियन बैंक --

हमें एक मंदिर दिख रहा है।

बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं।

और एक लेडीज भी है।

इस इमेज में एक--

इस इमेज में एक बोर्ड --

और लाइट्स के तार भी दिख रहे हैं।

एक बाइक दिख रही है जो ब्लैक कलर की है।

आगे कुछ दो कार खड़ी हैं।

नीचे कुछ बाइक और स्कूटर खड़े हैं।

नीचे एक बाहर एक आदमी बैठा हुआ है।

और पीछे कुछ लाइट्स लगी हुई हैं पेड़ भी दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक जंगल दिख रहा है।

और कुछ लोग रेड कलर पहने हुए हैं।

इस इमेज में एक शॉप दिख रही है।

जो कि ड्रम से पानी निकाल रही है।

बहुत सारे फोटोस --